लोग हैं जो साइकिल और गाड़ी से आए हैं जो लोग भी दूर से जो लोग आते हैं वह साइकिल या गाड़ी का यूज़ कर लेते हैं तो जिनके पास अवेलेबल रहता है वह लेकर --

ये जिम के अंदर का पिक्चर है और यहां पर अभी कोई भी नहीं है शायद ये बंद होगा या फिर अभी टाइम नहीं हुआ है।

और यह ऑफिस भी है ऑफिस का यहाँ पर नंबर भी लिखा यहाँ सभी तरह का कोर्स भी होता है कराया जाता है यू.जी.सी. डी.ई.सी. सब --

ओ-और ये-यहाँ पर यह नासा का है नासा का जो भी होता है ना ये वहां और यहाँ पर--